इस बस में बहोत सारे यात्री भी बैठे हुए हैं सामने की और भवन बना हुआ है।

ये एक ढाबा बना हुआ है जिसमें ऑरेंज कुर्सियां रखी हुई हैं।

और एक स्कूटी भी रखी हुई है जो नारंगी कलर की है।

जहां पर व्यक्ति हाथ होता है और पास ही में एक मशीन भी रखी हुई है।

यहां पास ही में एक नदी बनी हुई है जो नीली नीली सी प्रतीत हो रही है।

और यहां पास ही में बहुत सारे लोग भी खड़े दिख रहे हैं और एक पास ही में एक ओमनी रखी हुई है।

इनमें से एक पिला भी है औ कछु कत्थई है कछु हरे हैं और सफेद हैं।

और यहां पास ही में एक टैक्सी और ट्रक और मोटरसाइकल खड़ी हुई हैं।

इस पर जय श्रीराम लिखा हुआ है बीच में ओम का चित्र अंकित है।